यहाँ पर एक मैदान जहाँ पर एक पिलर गडा है उसके उप्पर झूला लगाया गया और झूले पर बहुत सारे लोग बैठे झूला साफी से बंधा गया है वहाँ आगे की तरफ बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक मुरूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर दो कुर्सियाँ दिख रही है। यहाँ कुछ टेबल दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक रास्ता है जहाँ पर कुछ ऑटो खड़े हुए दिख रहे वहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे वहाँ उप्पर एक खंबा है वहाँ पर कुछ तारे लटक रही पीछे की तरफ कुछ पेड़ दिखाई दे रही।

यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के नीचे एक दुकान दिखाई दे रही है वहाँ पर एक रस्सी से कुछ पेड़ के कत्थे बंधे हुए नज़र आ रहे साइड में एक सीढ़ी दिखाई दे रही

यहाँ पर एक बम्बू दिखाई दे रहा है इमारत के उप्पर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है उप्पर की तरफ बसें मे लाईट जल रही है वहाँ इमारत के अंदर भी कुछ लाईट जलते हुए नज़र आ रहा है।